डी वी आई बैंक के सामने वाली गली में है। इससे हमें काफी अच्छे कोर्सेस तथा जैसे की ट्रिपल सी ओ लेवल आदि काम आते हैं।

और यहाँ नीचे की तरफ कुछ सोफे पड़े हुए हैं तकि इन पर कुछ व्यक्ति बैठ सकें।